बूट क्लब में प्लेनिंग अ बूट क्लब में उम पानी के अंदर घूमती हुई नजर आ रहेंगे।

मुझे सामने ये एक ज जगह दिखाई दे रही है जगह के अंदर बाहर साइड मे कुछ तमिल मे लिखा हुआ है जोकि क्या लिखा है वो समझ नही आ रहा है और--

मुझे सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है आदमी पहाड़ के ऊपर है पहाड़ अह जो है वो काफी--

गहरा दिखाई दे रहा है यहां नीचे साइड में जमीन दिखाई दे रही नीचे साइड मे काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे।

यहां पे फ्लावर और बलून से काफी अच्छा डेकोरेट किया है यहां वा रेड और येलो कलर के--

मुझे सामने ईस्टर्न बैंक दिखाई दे रहा है एक ये बैंक जो है वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें साहू कंपलेक्स भी दिखाई दे रहा है एक।

और बाजू में बजाज वालों की कंपनी भी दिखाई दे रही है नेरोलैक कंपनी ने भी है यहां पे काफी ज्यादा अलग अलग कंपनियों के बोर्ड यहां पे--

अ शोल्डर पर क्या बोलते तिरंगे का निशान वाला एक--

मुझे सामने मछली की दुकान दिखाई दे रही है। यहां पे मछली सेल की जाती है कि इसके बाजू में भी एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है।

सामने एक पेंट की दुकान दिखाई दे रही हैं। यहां पे पेंटिंग का--

शायद ये पेंटिंग पेंट वगैरा है बेचने का काम करते हैं या फिर ये किसी अअ सामान की शॉप है यह जो की क्या है वो क्लियर नहीं है लेकिन--

गाड़ी और काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है बाटा का जो शोरूम है वहां से एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा होगा और--